की दुकान दिखाई दे रही--

तस्वीर में बहोत सारे।

नदी में नहा रहे।

रही है यहां जिम --

उपकरण जैसे--

रोटी बनाने की मशीन व कैटल है।

कप्पल दिखाई दे रहे--

इस तस्वीर में--

इस तस्वीर में सिरी ओम--

दिखाई दे रहा है। यहां सजावट कर--

बरामदा दिख रहा है यहाँ कुर्सियाँ भी--

यहां लंच ब्रेकफास्ट डिनर --

यहां सोना चांदी व डायमंड के ज़ेवर मिलते --

पतंजलि स्टोर दिख रहा है।